एं वहीं पर उनके पास बहोत बड़ी-बड़ी टोकरियां रखी हुई हैं जो पीले रंग की हैं और उन टोकरियों में सारी सामग्रियां भी रखी हुई हैं।